जिस पर कोको कोला लिखा हुआ है पास में बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पर डॉक्टर के नाम का एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

साथ में सरिए भी बड़े बड़े पड़े हुए हैं।

एक बैंक का नाम कोटक बैंक हैं।

और एक येलो कलर सुंदर सा गेट भी--

यहां एक बहोत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पर बहोत सारे रूम्स हैं और खिड़कियां भी दिखाई दे रही है।